सभी ने माक्स लगाया हुआ हैं। गोगल्स पहने हुए हैं। हेड माक्स लगाया हुआ है।

और मूर्ति दिखाई दे रही है। उसके पीछे एक बच्चा खड़ा है।

आसपास लकड़ी की स्टूल्स रखी हुई हैं।

और आइट साइड रेड कलर की बाउंड्री वॉल है। येलो कलर की वॉल पेंट है।

कंप्यूटर सेटअप दिखाई दे रहा है।

बेन्चेस दिखाई दे रहा है और ग्रीन कलर का मेट है।

ये इमेज एक प्लॅटफॉम की नजर आ रही है।

यहाँ इमेज एक स्कूल इंस्टिटूट की दिखाई दे रही है। यहाँ एक बोहोत बड़ी बिल्डिंग --

कुछ ने ग्रीन कलर का कुछ ने ब्लैक कलर का कुछ ने ब्रेक --

कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं और कुछ मिट्टी पड़ी है।